व बहुत सारी साड़ियां नीचे की तरफ सफेद कपड़े के ऊपर बिछी हुई दिखाई दे रही है व बीच में एक लाल कलर का लहंगा लटके हुए दिखाई दे रहा है।

यहां पे कुछ गाड़िया खड़े हुए दिखाई दे रही हैं बीच में खड़ी एक गाड़ी का नंबर यू_पी पैसठ डी बी तिहत्तर तिरानवे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक लकड़ी का बेड पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर गद्दा पड़ा है।

यहां पर बहुत सारे आदमी रोड के ऊपर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जिन पे आदमियों ने कुछ स्वेटर व शर्ट पहने हुए हैं पैरों में चप्पल डाले हुए हैं।

यहां पर सामने की तरफ बहोत सारे बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रही हैं जिसपे इंग्लिश में नो ऐक नो डी एक्सट्रीमी लिखा हुआ दिखाई दे रहा --

नीचे की तरफ सीमेंट के बहुत बड़े बड़े स्तंभ दिखाई दे रहे हैं जिसके ऊपर पूल टीका हुआ है।